झूला लगा हुआ है ऊपर ट्यूबलाइट वगैरा जल रही है।

यह महिला डांस करती हुई नजर आ रही है।

साथ ही सूर्य की रोशनी भी दिखाई दे रही है।

इस कॉलेज के बोर्ड पर संजय सिंह यादव कॉलेज जेल रोड गया दिखाई दे रहा है।

जिसमें एक लड़का अपने बालों को कटवा रहा है।

छोटे जीव होते है।

इसमें कोमल डेयरी लिखा हुआ है इस --

जिसमे वैभव जनरल स्टोर लिखा हुआ है अंग्रेजी भाषा में ।

इस द्रश्य में हमें कोचिंग एकेडेमी दिखाई दे रही है ।

यह दृश्य हमें किसी ऑफिस का नजर आ रहा है।

जो कॉफ़ी सुन्दर लग रही रही है।